अंदर की तरफ एक पानी की बोटल भी दिखाई जा रही है जो पानी से दिखाई जा रही है सामने की तरफ एक वाच दिखाई जा रही है जो दिवार पर लगी दिखाई जा रही हैं।

इस फोटो में सामने कि तरफ दो लड़के आते हुए दिखाई दे रहा जिनके टी-शर्ट का कलर ब्लैक दिखाया जा रहा है। ऊपर कि तरफ बहुत बड़े बड़े झंडे दिखाए जा रहा है। जिनका कलर ब्लैक रेड और ब्लू दिखाया जा रहा --

सामने कि तरफ एक परदा लगा हुआ दिखाया जा रहा है जिसका कलर व्हाइट दिखाया जा रहा है सामने की तरफ काउन्टर दिखाया जा रहा है जिन पर हरे पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे है। कुछ लोग वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

सामने की तरफ जो कपड़े डले हुए जो ब्लू कलर के दिखाए जा रहे है। पीछे की तरफ एक टेबल रखी हुई हैं। उस पर एक लैपटॉप रखा दिखाया जा रहा हैं।

उस दुकान का मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ दो काँच का बोक्स दिखाई दे रहा है। उस काँच के अंदर मिठाइयां दिखाई दे रही है। सामने की तरफ पैकेट दिखाई दे रहा है जो चिप्स के दिखाई दे रहे है। सामने की तरफ एक कैरेट दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है।

इस फोटो में सामने कि तरफ एक व्हाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है जो काफी लंबा दिखाई दे रहा है। सामने कि तरफ से दो चार गेट दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है।

एक नोकिया का बोर्ड दिखाई दे रहा है। एक आइरन सीटी दिखाई दे रहा है। हेड ऑफिस दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ तीन बाइके दिखाई दे रही है। जिनके ऊपर हेलमेट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। साइड मे से सीढ़ी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने की तरफ एक बहुत बड़ा कांच दिखाया जा रहा है। ऊपर की तरफ दो बोतलें दिखाई जा रही हैं। दो डस्टबिन दिखाए जा रहे हैं। नीचे की तरफ दो कारें दिखाई जा रही है जो ब्लैक और रेड कलर के दिखाई जा रही हैं। सामने की तरफ ये --

यहाँ पर सामने की तरफ एक टेडी बेयर दिखाया जा रहा है जिसका कलर रेड दिखाया जा रहा है |

ऊपर की तरफ कृष्ण जी कि तसवीर दिखाई जा रही है एक और फोटो फ्रेम दिखाया जा रहा है जिसमें तीन फोटो लगे हुए हैं सामने एक बॉक्स दिखाया जा रहा है बाक्स के अन्दर कुछ सामान रखा हुआ दिखाया जा रहा है।